यहाँ पे डोर बनी हुई है ऊपर लाइटें लगी हुई है सामने एक सी.सी.टी.वी. कैमरा भी रखा हुआ है।

दरअसल यहाँ पे दो ऑटो रिक्शा है।

फूल की माला दिखाई दे रही है जिसके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने येलो कलर की टी-शर्ट पहन रखी है।

रेड एण्ड ग्रीन कलर से पैंट किया गया है अगल-बगल मे बहुत सारे पेड़-पौधे भी --

यहाँ पर एक बाउन्ड्री जैसा कुछ देखा जा रहा है जिसके नीचे बहुत सारे मुक्की छोड़े गए है।

और यह सब महिलाएं देखी जा सकती हैं जिन्होंने अलग-अलग रंग के ड्रेसेस पहन रखे हैं और सभी वे अपने अपने स्टेप कर रखे हैं।

नाव पानी मे उतरी हुई है अगल-बगल मे और भी बहुत सारे पानी देखी जा सकती है अगल-बगल मे और भी बहुत सारे लोगों को भी देखा जा रहा है।

और इस पहाड़ एक दोनो तरफ बहुत बड़े-बड़े पेड़ देखे जा रहे है पहाड़ के एक स्थान से हल्का सा पानी भी निकलता हुआ शायद नजर आ रहा है।

कुछ यहाँ पर टाटा स्काई लगा हुआ है ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ एक और दुकान दिखाई दे रही है।